यह चित्र एक बिल्डिंग के बाहर लगे हुए--

कुछ लोग इकठ्ठे खड़े हुए हैं।

गाड़ियों के ऑयल रखे हुए दिख रहे हैं।

कमरे में शूटिंग चल रही हैं।

पेड़ भी दिखाई दे रहे है।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

कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं एक घर भी दिख रहा है।

टंगे हुए हैं और बहोत कुछ रखा है।

भरी हुई है दिखाई दे रही है।

पर कुछ ट्रक दिखाई दे रहे है।

एक उससे बड़ी है और एक उससे भी बड़ी हैं।

व्यक्ति भी है दुकान का नाम सरकार एक्वा बॉय है।

इस चित्र में पेड़ दिखाई दे रहा--

कुछ पत्तियां भी दिखाई दे रही है।

खुली हुई मशीन का है।

और कुछ विद्यार्थी पढ़ते हुए दिखाई दे रहे--

बैठी हुई है कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

कुछ पेड़ भी दिखाइ दे रहे हैं बोरिंग की खुदाई चल रही है।

स्टील के ग्लास दिखाई दे रहे हैं।